यह एक बड़ी सी दुकान है।

गाड़ी लगी है एक--

छोटा सा बच्चा खड़ा है।

मेले का फोटो है।

बिल्डिंग मटेरियल लिखा हुआ है ये अंबुजा सीमेंट --

एक चेयर रखा हुआ है।